इस दृश्य में एक क्लास रूम का चित्र है।

इसमें चारों ओर से टेंट जैसा लगा हुआ है और कुछ कुछ सामान भी सेल हो रहा है।

एक टेबल और चेयर भी लगा हुआ है।

कुछ गाय बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं।

इस कॉलेज का नाम एस_एस मेमोरियल कॉलेज है।

इस पेट्रोल पंप के बगल में बहुत बड़ा सा फ्लैट भी बना हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक बाइक शोरूम का चित्र है।

और एक आदमी का बाइक में दूध वाला कैन टांगा हुआ है।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

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का चित्र है।

इस बिल्डिंग का गेट खुला हुआ है।

इस बेंच पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं।

कुछ और बुक कॉपी को प्लास्टिक से भी कवर किया हुआ है।